यह पिक्चर हमें एक फ्रूट वाली शॉप की दिखाई दे रही है।

ऊपर बहोत सारे बैलूंस लगे हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ लोग सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

यह पिक्चर हमें किसी फ्रूट वाली रेहड़ी की दिखाई दे रही है।

पास में कुछ मशीने भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह पिक्चर हमें किसी ढाबे की दिखाई दे रही है।

सड़क के आसपास पेड़ लगे हुए हैं।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

आसपास हमें बोहुत सारी शॉप्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

हमें आसमान भी नजर आ रहा है।

यहां पर हमें बहुत सारे कार के सैंपल पीस लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यह पिक्चर हमें किसी बैंक की दिखाई दे रही है।

आसपास पेड़ भी लगे हुए दखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें बहोत सारे कुल्हड़ पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।